यहाँ कुछ आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी के हाथ में ग्लव्स पहने हुए पिलर पकड़े हैं।

उसके ऊपर एक लकड़ी का बेड बना हुआ है।

लाइटिंग दिख रही उसके सामने खड़े हैं कुछ आदमी कुर्सी पर बैठे हुए हैं।